यह दरअसल में एक बुलेट है।

उसके पास बहोत सारी वव्हीकल्स खड़ी हैं।

यह दृश्य हमें किसी फंक्शन का लग रहा है।

टेंट में हमे कुर्सियां और कुछ लोग भी खड़े हुई दिखाई दे रहे हैं।

हमें दुकान का ओनर भी दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य हमें किसी जिम एरिया का दिखाई दे रहा है।

घने बादल दिखाए जा रहे है।

चलते हुई दिखाई दे रहे हैं।

इसमें हमें एक डॉक्टर और एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ--

इस दृश्य में हमें--

इसके बाहर हमें बहुत सारी कार पार्क की हुई नज़र आ रही है।